अ गेहूँ का खेत है जिसमें की गेहूँ --

रिलेक्सो का शोरूम है बाहर में बहुत सारा बाइक लगे हुए हैं एक स्कूटी भी है अंदर में एक --